बाहर से कमरे को बलूनों से सजाया हुआ है।

एक सफेद रंग की गाड़ी आती हुई दिख रही है।

पीछे बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं।

यहां पर डलियां में बहोत सारी सब्जियां रखी हुईं हैं।

ये एक खेत की तस्वीर है।

जिसमें बहुत सारे गमलों को रखा हुआ है।

कुछ रंग बिरंगे से गमले भी रखे हैं।

पास में बिजली का एक खंबा लगा हुआ है।

जिसके बाहर जालियों से--

ये काले रंग का शटर है।

कमरे में पूरा पीला लाइट लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी इमारत है।

उसमें कुछ छोटी-छोटी सी घास लगी हुई है।

जिसकी अलमारी में काफी सारी किताबें रखी हैं।

तस्वीर में एक आदमी खड़ा है।

और पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

ये अ एक बड़ी बस है।

पेट्रोल पंप पर काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

एक बच्चा पीले कपड़े पहने खड़ा है।

और एक बच्चा जा रहा।

सामने हरा हरा सा पहाड़ है।

ये एक बड़ी जवेलर्स की दुकान है।

जिसका नाम अंबिका है।

ये सामान खाने पीने का है।

और छत पर भी बहुत अच्छी लाइटें लगी हैं।

काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

चर्च के पीछे बड़ा सारा पेड़ भी है।

और काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

और सफेद रंग की लाइटें लगी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं।

आसपास पेड़ भी लगे हैं।

पानी में एक लोहे का खंबा भी है।

जिन पर बोर्ड लगे हुए है।

अलमारियों में बहुत सारी दवाइयां रखी हुई हैं।